यह इमेज में बहोत सारे लोग खड़े हैं जो कि लेबर हैं और काम कर रहे हैं जिस तरह से ये दिखााई दे रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी छत का लेंटर डाल रहे हैं और उसकी ही उसका ही काम कर रहे हैं।

यह चित्र किसी मच्छी बाजार का लग रहा है यह बहुत बड़ा बाजार है क्‍योंकि इसमें मच्छियां तो बिक ही रही है साथ में --

इस चित्र में हमें कई तरह की महिलाएं और बच्चियां दिख रही है जो कि शायद से भरतन्याटम करती हैं इनमें जो छोटी बच्चियां हैं और दो बड़ी महिलाएं --

इस छवि में हमें बहोत से लोग एक कमरे में नजर आ रहे हैं जो‍ कि शायद कोई एक्सरसाइज या डांस या योगा करते हुए दिख रहे हैं इस कमरे में ए.सी. भी नजर आ रहा है।